और इसके नीचे घास भी लगा हुआ है।

शंकर पुस्तक भगवान शंकर स्टैशनेरी हाउस और नीचे शटर लगा हुआ है ।

और नीचे दरी बिछा हुआ है इस पर।

और बहुत सा लोग भी हैं इसमें। कुछ खड़े हैं कुछ जा रहें हैं।